यह हवाई-अड्डा भागलपुर है यह हवाई अड्डा में बहुत सारे आदमी आ आए हुए हैं हवाई अड्डा में एक --

यह एक रेस्टोरेंट है यह रेस्टोरेंट में सभी तरह के खाना यहां पे मिलते --

बैटरी से चलती है यह एक सौ पाँच किलोमिटर की दुरी --

एक मॉल है यहाँ पे रेमंड शॉप है यहाँ पे बहोत सारे आदमी इस मॉल में --

बालू भी गिराई गयी है और काम चल --

यहाँ एक प्लेट में पराठा और चटनी रखी हुई है यह हरा चटनी है यह पराठा खाने में बहुत ही --

इस कॉलेज में पढाई कर रही है बेंच पे बहोत सारे लड़के और लडकिया बैठी हुई है।

स्टेज बनाया गया है काफी सारे लाइट से सजाएं --

यहाँ पे बहुत सारे लेबर मिस्त्री लगे हुए है यहाँ पे बालू सीमेंट भी गिराया गया है पिलर गड़े गया है बहुत सारे आ --

यह ढलाई करने के लिए बहुत सारे लेबर मिस्त्री लगे हुए है।

बहुत सारे आदमी यहाँ पे आते हैं और लेबर मिस्त्री भी लगी हुई है।

यह पेन्टिंग बहोत ही सुंदर दिख रहा है सभी तरह के चित्र है।